इस तस्वीर में एक नदी दिखाई गई है उसमें बहोत सारा पानी--

और यहां कुछ रंग बिरंगी कुर्सियां भी--

इस तस्वीर में एक हेल्थ क्लिनिक दिखाया गया है।

और यहां ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा।

दिखाई दे रहा है और यहां --